वो एक सेंडिल पहना है जूता पहना है चलो कुर्ता पहना है जर्सी पहना है बहुत अच्छा है दिखने में।

लाल बत्ती बल रहा है इधर बहुत सारा आदमी है खड़ा और इधर चरक बोल बर रहा है।

पीला से खंभा पेंट हुआ है माला है।

यहां पे दिखाया जा रहा है घड़ी है ए_सी है कूलर है और लिखल है काची तो और चरक बल्व बर रहा है उसपर --

नीचे चरक पेंट हुआ है ऊपर एक करिया पेंट हुआ है ये आदमी हेलमेट पहना है सबका चेहरा ब्लर किया है।

खराब दिख रहा है खिड़की है करकट से देवल गया है।

यह चित्र में दिखाया गया की बहोत बड़ा एक नदी है बहोत सारा पहाड़ है पहाड़ के ऊपर बहोत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है।

अच्छा दिख रहा है नदी में कुछ तेर रहा है लोटा टाइप का तैर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख कर।